फोटो में एक हवेली दिखाई दे रही है जो पीछे साइड है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

इसके ऊपर एक रेलिंग भी बनी हुई है।

रेली का कलर येलो व्हाइट कलर का है।

बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं काउंटर पर।

इस फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग बैंचों पे चार्ट रखे हुए हैं।